जहाँ बहुत से गुलाबी और उजले और ब्लू बैलूंस लगे हुए हैं।

हमें अपने दोस्त अपने रिश्तेदारों को भेंट कर सकते हैं और एक किसी मॉल का दृश्य है।

ये किसी कपड़े के मॉल का दृश्य है जहाँ बहुत से लड़कों के कपड़े नजर आ रहे हैं और बहुत से टंगे हुए भी हैं।

पैसा निकाल रहा हो ए_टी_एम का यूज हम आमतौर पे अपने बैंक में जो पैसे रहते हैं उसे निकालने के लिए करते हैं यदि हमें अपने हार्ड पैसों का जरूरत रहता है।